इन्ही के पास में तीन पेड़ लगे हुए हैं और उन्ही के जस्ट साइड मे कुछ ल- लेडीसे बैठी हुई हैं इन्हीं लेडिसो लेडीज़ो के जस्ट पीछे की तरफ बहुत सारे लड़के लोग खड़े हुए हैं।

इस इमेज में डांस क्लास रूम नजर आ रहा है। जिसमे कुछ बहुत सारी लड़कियां योगा करते नजर आ रही है।

जोकि नीचे की तरफ बैठी हुई है और जिस चीज़ पे खड़ी हुई है वो एक कारपेट है जिसपे ये बैठी हुई है और इसी के साइड में वाइट कलर के कपड़े से की कुर्सी रखी हुई है।

साइड में एक बिल्डिंग नज़र आ रही है और इसी छत पर तीन लेडीज लोग योगा कर रही है और उन्होंने अलग अलग अपनी चटाई भी बिछा रखी है।

और सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और इसी नदी के जस्ट सामने की तरफ एक बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ है। उस पहाड़ पर बहुत सारा पेड़ पौधे हरियाली बनी हुई --

इस इमेज में एक ऑफिस नज़र आ रहा है इस ऑफिस में कुछ एक सामने डेस्क पे कोई सर बैठे हुए हैं जो --

इस इमेज मे एक इस स्टेज नरर नज़र आ रहा है। इस स्टेज पे व्हाइट कलर का --